यहाँ सामने में बोहोत बड़ा हॉल जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे बोहोत सारे मशीन रखा हुआ है वाइट और ब्लू कलर में और यहाँ --